इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रहा है।

और गाड़ी के आगे बहुत ज्यादा आदमी लोग खड़ा हुआ है।

दुकान के अंदर एक आदमी फोन पड़कर बैठा हुआ है।

और राइट साइड पर एक व्यक्ति खड़ा होके है बिना शर्ट पहने।

इस फोटो पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और घर के आगे एक बाइक खड़ा होके है।

इस फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर बहुत बड़ा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारा फूल लगा हुआ है।

फोटो पर बहुत सारा टेबल और चेयर दिखाई दे रहा है।

और फोन के आगे बहुत ज्यादा कार्टून का बॉक्स रखा हुआ है।

इस फोटो पर दो घर दिखाई दे रहा है।

और उसी घर के अंदर दो बेंच और एक टेबल रखा गया हुआ है।

और इन व्यक्तियों के सामने चार बड़ा बड़ा पत्थर है जिसमें कलर मार के है।

ये एक रूम है और रूम में एक बेड रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ब्रिज ब्रिज के पीछे बहुत ज्यादा पहाड़ भी है।

और इस दुकान के ऊपर एक--

और दुकान के आगे पांच टेबल फैन भी रखा हुआ है।

और सबसे आगे वाले टावर के नीचे--

और लेफ्ट साइड में एक हैंडपंप है और उसके सामने--